जहां पर कुर्सी और टेबल नजर आ रहे यहां पर ए_सी भी दिखाई दे रहा --

कुर्सी टेबल के अलावा यहां सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रहा।

भी दिखाई दे रही है लाल टमाटर और गाजर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर नज़र आ रहा है जोकि एक सफेद कलर का नज़र आ रहा --

पास मे एक खम्बा भी नजर आ रहा--

के पीछे गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है।

जहां पर कुछ ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल जाता है यहां कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे--

यहां पर जूस की सुविधा भी--

यहां कांच के मिरर दिखाई दे रहे जो की दो मिरर दिखाई दे रहे--

यहां पर डेंटिंग पेंटिंग वायरिंग मैकेनिक व ऑफिस का कार्य --

यह एक लक्ष्य बुक डिपो नजर आ रहा--

यहां हरे पेड़ के अलावा कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं इसके अलावा आसपास --

यहां पर एक आदमी और एक औरत शादी के बंधन में बंधे हुए नजर आ रहे --

यह चौधरी होटल के बाहर कुछ चारपाई भी दिखाई दे रही हैं।